ये एक हॉल है इस हाल मे कुछ कार्य हो रहा है और इस कार्य मे दो फोटो लगे हुए हैं एक बाबा अंबेडकर जी का फोटो लगा हुआ है जिसमे बाबा अंबेडकर जी कोर्ट पैंट टाई लगाये हुए हैं।

और जिसमे टायर लगे हुए है कार के पास और एक आदमी जो है वो इसमें घसने का काम कर रहा --

जिओ संस्था के द्वारा फाउन्डेशन चलाया जा रहा है जहा पे गरीब बच्चों के लिए कपड़े रखे गए हैं और यह टेबल पे बहुत ढेर सारा कपड़े रखे हैं।

जहाँ पे कुछ लेडीज भीड लगी हुई है और पास में दुकान है कुछ और ये एलवेस्टर रखा हुआ है उस दुकान के उपर।